कई ठे बाइक रखी हुई है। बिल्डिंग के ऊपर कई ठे सरिया खड़ा हुआ है। इसके बाहर एक बैनेर लगा हुआ है।

और दो ठो जींस है। कई कलर में दिख रहा है।

यहाँ पे एक घर बन रहा है। जिसके बाहर कई तीन चार लेबर मजदूर लेबर हैं।

और ये दो ड्रम है। दो ड्रम में पानी भरा हुआ है। एक पाइप है।